साथ ही हमे यहा पर कुछ टेबल बी रखे दिखाई दे रहे है वही हम चेयर पर बेठे एक आदमी को देख पा रहे है।

यह द्रश्य एक स्टेशनरी दुकान का है यहां पर हमें बहुत सारी चीजे देखने को मिल रही है शेल्फ पर हमें अलग-अलग तरह कि चीजे रखी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हम कोने में एक प्लास्टिक भी रखा हुआ देख पा रहे है देखने में ये द्रशय अच्छा लग रहा है।

ये सारी गाड़िया अलग अलग कंपनी की है हमें यहा ऊपर एक तिरपाल भी लगाया हुआ दिखाई दे रहा है साथ ही हम यहाँ पर पेड़ भी देख पा रहे है।

एक गराज का द्रष्य है जोकी देखने में काफ़ी बड़ा है पर यहाँ पर बहुत सारी गाडियों को देख पा रहे है इन गाडियों ठीक करते हुए हमे यहाँ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

हम यहाँ पर कुछ रूह अफ्जा की बोटले कुछ बिस्किट कुछ जूस कुछ कलर कुछ चॉकलेट अदि देख पा रहे है देखने में यह काफी अच्छा लग रहा है।

टेबल पर भी हम बहुत सी चीजे रखी हुई देख पा रहे है जिनमे हम कुछ बुक कोफ़ी कुछ पेंसिल कुछ पेन कुछ कलर और भी अन्य चीजे देख पा रहे है।

हमें एक टायर बहार भी दिखाई दे रही है देखने में ये कार अच्छी लग रही है आस पास हमे यहाँ कुछ चेयर लगी हुई भी दिखाई दे रही है।

यह दृश्य एक कैफ़े का है जहाँ पर हमे बहुत ही सुन्दर तरीके से साग सजावट कि गई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें कई सारे टेबल चेयर देखने को मिले है देखने ये कैफ़े बहुत ही सुंदर लग रहा है।

एक आदमी मशीन से काम करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर हमें कुछ सूचना लिखी हुई भी दिखाई दे रही है ऊपर हमें सेनेटिज़ेर रखा देखने को मिल रहा है।

वही हम यहा पर कुछ अन्य पोस्टर लगे हुए भी देख पा रहे है ऊपर पर भी हमें भगवान की फोटो लगी दिखाई दे रही है यहाँ हमें एक कार भी दिख रहा है।

एक केक की दुकान का है जहा पर हमें फ्रिज में बहुत सारे केक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं ये सारे सारे केक अलग अलग फ्लेवर के हैं।

ली गयी इस तस्वीर में हमें एक गेट दिखाई दे रहा है जो कि काले रंग का है वहीं हमें अन्दर में एक बैंक देखने को मिल रहा है।

आदमी का फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आस पास हम यहाँ पर पेड़ पौधे भी देख पा रहे है।

इसमें हमें एक ‌‌रास्ता दिखाई दे रहा है यहां पर हम एक औटो खड़ा देख पा रहे है वही सामने हमें या पर एक बड़ा सा हॉल भी दिखाई दे रहा है।